मुझको साइड में पानी पे घांस नजर आ रही है उस तरफ में एक लाल दीवार नजर आ रही है आकाश नजर आ रहा है पेड़ लगे हुए हैं।

एक घर दिख रहा है जिसकी खिड़कियां मुझे नजर आ रही हैं।

उस मंदिर के बाहर का नजारा है ये--

इस फोटो के अंदर मुझे दरवाजे नजर आ रहे हैं।

इस फोटो के अंदर मुझको हरी घास नजर आ रही है कुछ दूरी पे पेड़ नजर आ रहे हैं।

दो आदमी पुल के अंदर है एक आदमी पुल के बाहर खड़ा हुआ है।

जिसमें मिनी टैटूज लिखा हुआ है जिसका प्राइस फाइव फॉर्टी नाइन है।

रैक के अंदर बहुत सारा सामान रखा है। सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। उसके बगल में एक औरत बैठी हुई है।

जिसके ऊपर तोरण लगी है पिंक रंग की लाल रंग की पीले रंग की।

बहुत सारी मुर्गियां नजर आ रही हैं।

सामने बिस्किट्स की बरनी रखी हुई है।

एक भगोने के ऊपर नीले रंग का टॉवेल रखा है उसके पीछे ऑटो है उसके बगल में एक हरी टी-शर्ट में आदमी--

सुंदरवन कोहिनूर का बोर्ड नजर आ रहा है गेट नजर आ रहा है जो कि पीले--

बिल्डिंग के बगल में वायर नजर आ रहा है।

कुछ होडिंग्स लगे हुए हैं पूनम ग्लास हार्डवेयर का उसके बगल में एक और होडिंग है प्रिंस ट्रेडर का--

खास नजर आ रही है कुछ दूरी पर घर बने हुए दिख रहे हैं।

पेड़ में कुछ लाल फूल नजर आ रहे हैं काले कलर का दरवाजा है अंदर की तरफ में मुझे बहुत सारी खिड़कियां नजर आ रही हैं।

इस फोटो के अंदर मुझे पानी की टंकी सफेद नजर आ रही है।

एक नर्सरी है इसमें कई तरह के पेड़ लगे हैं एक--

डी देख करके एक पैनल लगा हुआ है।